लिबरऑफिस कैल्क में बुनियादी डेटा मैनिप्यूलेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
फॉर्मुला के मूल चीजों का परिचय
कॉलम द्वारा सोर्ट करना
डेटा फिल्टर की मूल बातें
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
चलिए ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और लिबरऑफिस कैल्क में इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी फॉर्मुला के बारे में सीखते हैं
फॉर्मुला समीकरण हैं जो नम्बर और वेरिएबल का उपयोग करके परिणाम देता है
स्प्रैडशीट में वेरिएबल्स सेल स्थान होते हैं जो समीकरण पूरा करने के लिए आवश्यक डेटा को रखते हैं
सबसे बुनियादी अरिथ्मेटिक ऑपरेशन जो किए जाते हैं वह हैं एडिशनसब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविज़न चलिए पहले अपनी Personal Finance Trackerodsफाइल ओपन करते हैं
चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल में कॉस्ट हेडिंग में बताए खर्चों को कैसे जोड़ें
हम सुम टोटल नामक हेडिंग मिसेलेनियस के अंतर्गत देते हैं
और हम सेल आ8 पर क्लिक करते हैं और सिरिअल नम्बर 7 देते हैं
अब सेल नम्बर सी8 पर क्लिक करते हैं जहाँ हम कॉस्ट की कुल संख्या प्रदर्शित करना चाहते हैं
सभी कॉस्ट को जोड़ने के लिए हम टाइप करते हैं सुम और कोष्ठक में जो कॉलम जोड़ने हैं वो हैं सी3 कोलोन सी7
अब हम कीबोर्ड से Enter प्रेस करते हैं
आप देखते हैं कि कॉस्ट के अंतर्गत सभी आइटम जुड़ जाते हैं
कैल्क में सब्ट्रैक्ट कैसे करें यह सीखते हैं
यदि हम हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसे सेल आ9 में दिखाना चाहते हैं तो पहले सेल आ9 पर क्लिक करें
अब इस सेल में टाइप करें और कोष्ठक में सम्बन्धी सेल रेफरेंस जो है सी3 माइनस सी4
कीबोर्ड पर Enter की प्रेस करें
हम देखते हैं कि दो सेल रेफरेंस में कॉस्ट सब्ट्रैक्ट होती है और परिणाम सेल नम्बर आ9 में प्रदर्शित होता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
उसी तरह हम अलग अलग सेल में डिवाइड और मल्टिप्लाइ कर सकते हैं
स्प्रैडशीट में एक और बुनियादी ऑपरेशन है नम्बर्स का औसत निकलना यानि एवरेज चलिए देखते हैं कि यह कैसे कार्यान्वित होता हैं
सुम टोटल सेल के ठीक नीचे हेडिंग देते हैं एवरेज यहाँ हम पूरे कॉस्ट का एवरेज प्रदर्शित करना चाहते हैं
अब सी9 सेल पर क्लिक करते हैं
अब हम टाइप करते हैं एवरेज और कोष्ठक में कॉस्ट कीबोर्ड पर Enter की प्रेस करें
आप देखते हैं कि कॉस्ट कॉलम का एवरेज सेल में दिखाई देता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
उसी तरह हॉरिज़ान्टल रो के एलिमेंट्स का एवरेज पता कर सकते हैं
हम अडवांस्ड लेवल के ट्यूटोरियल में फॉर्मुला और ऑपरेटर के बारे में ज्यादा सीखेंगे
हम सीखते हैं कि कैल्क स्प्रैडशीट में डेटा को कैसे सोर्ट करें
सोर्ट करने से शीट में सेल्स को इच्छा अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं
कैल्क में आप तीन मापदंड तक डेटा सोर्ट कर सकते हैं जोकि एक के बाद एक लागू कर सकते हैं
यह सुविधाजनक होते हैं जब आप एक विशिष्ट आइटम खोजना चाहते हैं और यह और सशक्त होता है जब आपके पास फिल्टर हुआ डेटा होता है
मानिए कि आपको कॉस्ट्स हेडिंग के अंतर्गत जो डेटा है उसे आरोही क्रम में सोर्ट करना है
अतः पहले सेल्स जो सोर्ट करने हैं उन्हें चिन्हांकित करते हैं कॉस्ट सेल पर क्लिक करते हैं
अब लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके कॉलम के अंत के सेल तक ड्रैग करें जिसमें 2000 लिखा है
यह कॉलम चुनता है जिसे सोर्ट करना है
मेन्यूबार में दाता ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सोर्ट पर क्लिक करें
अब करेंट सिलेक्शन को चुनें
आप सोर्ट क्राइटेरिया और आप्शंस नामक टैब्स डायलॉग बॉक्स में देखते हैं
सोर्ट क्राइटेरिया टैब में सोर्ट बाय फिल्ड में कॉस्ट चुनें
कॉस्ट को आरोही क्रम में सोर्ट करने के लिए ठीक उसके बगल के असेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें
अब ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि कॉलम आरोही क्रम में सोर्ट हुआ है
उसी तरह अवरोही क्रम में सोर्ट करने के लिए डिसेंडिंग पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
बदलावों को अन्डू करते हैं
विविध कॉलम को सोर्ट कर सकते है
पहले सभी कॉलम को चुनकर और फिर सोर्ट ऑप्शन लागू करके ऐसा कर सकते हैं
मानिए कि हमें सीरियल नम्बर और कॉस्ट दोनों ही सॉर्ट करने हैं
तो पहले इन कॉलम को चुनिए जैसे हमने पहले किया था
अब हम मेन्यूबार से दाता ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स में सोर्ट बाय फिल्ड में पहले कॉस्ट चुनें
फिर थेन बाय फिल्ड से स्न चुनें
दोनों ऑप्शन में डिसेंडिंग पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि दोनों हेडिंग अवरोही क्रम में सॉर्ट होते हैं
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब सीखते हैं कि लिबरऑफिस कैल्क में डेटा कैसे फिल्टर करते हैं
फिल्टर कंडिशन्स की एक सूची है जो प्रत्येक एंटरी को पूरा करने के लिए प्रदर्शित होती है
स्प्रैडशीट में फिल्टर लागू करने के लिए Itemनामक सेल पर क्लिक करें
अब मेन्यूबार में दाता ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल्टर पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू में ऑटोफिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें
हेडिंग्स पर आप एरो चिन्ह देख सकते हैं
इतेम नामक सेल में डाउन एरो पर क्लिक करें
अब यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित डेटा ही प्रदर्शित हो
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित डेटा ही शीट में प्रदर्शित हुआ है
बचे हुए ऑप्शन फिल्टर हुए हैं
सभी डेटा को देखने के लिए इतेम नामक सेल के डाउन एरो पर फिर से क्लिक करें और अल्ल पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि हम अपने लिखे हुए डेटा को अब देख सकते हैं
ऑटोफिल्टर के अलावा दो और फिल्टर ऑप्शन हैं स्टैंडर्ड फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टर जिनके बारे में हम बाद में सीखेंगे
अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
हमने निम्न सीखा है संक्षेप में
फॉर्मुला के मूल चीजों का परिचय
कॉलम द्वारा सोर्ट करना
डेटा फिल्टर की मूल बातें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद